ए देखिए एक और तलाब। ये पूरे--

ये देखिए पूरे आदमी यहाँ हैं हम् फसाद वो तादाद में यहाँ आदमी भरे हैं।